जिसमें एक ब्लू कलर की बस भी है।

काफी सारे जिम के इक्विपमेंट्स हैं।

और साथ में एक और भगवान जी भी दिख रहा है और दो-तीन औरतें भी दिख रही हैं जो कि --

जिस पार्क में काफी सारे पेड़-पौधे हैं।

और इसमें एक लंबी ट्रैक भी दी गई हुई है।

काफी सारे बैलूंस दिख रहे हैं।

और बीच में एक लड़का भी खड़ा है एक आदमी भी और काफी सारे लोग --

छह कलाकृतियां देखी गई हैं।

यह एक रेस्टोरेंट का इमेज है।

और ऊपर एक चित्र भी बनाए हुए हैं।

इस इमेज में एक मॉल है।

और ऊपर लाइटिंग माइटिंग भी सारी किए हुए हैं।

एक मैदान दिख रहा है जिसमें काफी सारे गड्ढे हैं।

यह एक बेडरूम का इमेज है।

जिसमें एक बेड दिख रहा है और एक तकिया लगाए हुए हैं।

और पीछे में कुछ बोटलें भी रखी हुई हैं।

जिसमें काफी सारे पुस्तकें दिख रही हैं।

यह एक ग्रोसरी का दुकान है।

जिसके बाहर दोनों गधे नहीं जा सकते--

सामने में एक ट्रक भी दिख रहा है एक मैजिक भी दिख रहे है।

जिस जिस पे कुछ नाम लिखा हुआ है।

और स्टार्स और पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं।

जिसमें दो आदमी भी दिख रहे हैं और पीछे पेड़ भी दिख रहा है।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

यह एक सब्जी मंडी का इमेज है।

यह एक कंप्यूटर का शॉप दिख रहा है।

जिसमें सामने में लिखा हुआ है ब्रदर्स कंप्यूटर --

जो कि ड्यूक है के_टी_एम का ड्यूक --

और जिसमें गेट लगी हुई है और अंदर जाने का रास्ता है।

इसमें एक गेट खुली हुई है और एक गेट बंद--

और काफी सारे पेर पौधे भी दिख रहे हैं।

और अपने हेलमेट को नीचे जमीन पर रखा हुआ है।

और पीछे से और पतली सी एक गली भी निकल रही है उसके पीछे से--

यह एक गराज का इमेज है।

और मैदान में दो ईंटें भी रखी हुई हैं।

इस तस्वीर में एक बिल्डिंग है।

और नीचे तीन-चार चेयर लगी हुई हैं।

और गार्डन भी दिख रही हैं और पीछे काले कलर के बादल भी दिख रहे हैं।

डस्टबिन भी दिख रहे और साइड में एक एस_बी_आई का ए_टी_एम भी है।

और उसके ऊपर काफी सारे बुक्स रखे हुए हैं।

और इसमें बीच में एक आदमी भी दिख रहा है।

और फिफ्टी परसेंट ऑफ अभी सेल में चल रहा है।

बैडमिंटन के काफी सारे रखे हुए हैं कवरें --

ऊपर भी काफी सारे कवर्स रखे हुए हैं।

और नीचे एक ड्रॉर भी है जो कि खाली है।

और लोगों से बातचीत कर रहे हैं।

जो कि विशाल मेगा मार्ट है।

और पीछे एक शीशा का गेट दिख रहा है और साइड में एक--

जिसमें काफी सारे फोर व्हीलर्स आके लगे हुए हैं।

और उस पे काफी सारी लाइटें लगी हुई हैं।

इसके साइड में फूलमाला की भी दुकान है और फूलमाला--

और इसमें बाकी सब सामानें भी दिख रही हैं।

और सामने में दो चेयड़ भी है जो कि खाली है।

यह एक कंप्यूटर शॉप की दुकान है।

साइड में पानी भी दिख रही है।

और काफी सारे बच्चे खेल रहे हैं।

और बाहर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

और इसमें एक ताड़ का पेड़ भी दिख रहा है।

जिसमें एक पेर भी बाहर लगी हुई है।

और इस बेड पे वाइट कलर की चादरें बिछाई हुई हैं।

और इस खालफी हरियाली है और इसमें पेड़ पौधे भी काफी दिख रहे हैं।

यह एक ग्राउंड की तस्वीर है।

इस इमेज में बच्चों की डांस क्लास चल रही है।

और पुनाई चेक यह लोकेशन है इस पे एक वाइट कलर की बिल्डिंग भी दिख रही है।

इस तस्वीर में आलू दिख रहा है।

जिसमें काफी सारे आलू रखे हुए हैं।

एक शर्ट और पैंट पहना हुआ है ब्लू कलर का और वह एक पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ है।

और काफी सारे लॉकर रूम भी दिख रहा है।

एक साइड में पंखा लगा हुआ है।

जिसमें सामने में रोड दिख रहा है।

पीछे काफी सारे पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

यानि गेंद का फूल दिख रहा है।

यह एक वाटरफॉल की तस्वीर है।

खड़े हुए हैं और उस पानी को गिरते हुए देख रहे हैं।